यहां मैं देख पा रही एक बहोत ही बड़ा--

लोहे का दरवाजा लगा हुआ है बगल में एक बिजली का खंबा है औ बहोत सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

ढेर सारे रखे हुए हैं और छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख र--

सारे काउंटर बनाए हुए है और वहां पे टी_वी भी बिक रहा है।